और एक पंखा दिखाई भी दे रहा है।

और बाहर डिजाइन भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत ही सुंदर कमरा है।

यह एक टाउन टेबल है इसमें मुझे अंदर गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं और बाहर एक दुकान दिखाई दे रही है।

और बहुत सारी लाइट दिखाई दे रही है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है इस दुकान में मुझे बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है।